और इसमें बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

और कुछ कांच भी लगा हुआ है।

यह एक बहोत बड़ा घर है।

और साइड में एक कार और पेड़ भी हैं।

यह एक बहुत सुंदर कमरा है।

और इसमें दो गैस भी है।

और इससे परे कुछ घर भी है और कुछ पेड़ पौधे भी है।

और कुछ पेड़ पौधे भी है।